यह एक टब है बाथरूम का सेट है टाइल है ब्लू कलर का लगा हुआ ग्रीन कलर का भी टाइल्स लगा हुआ है ब्लैक कलर का पट्टी है।

एक सा नया एकदम है आदमी आया हुआ है ब्लू शर्ट पहना हुआ है ब्लैक पैंट पहना हुआ है प्लस में गमछा रखा हुआ है।

कोई लड़का इस बहोत सारे लड़का लड़की सब ये नीम के पेड़ सा सा साइड में बैठकर टेस्ट दे रहे ग्रीन कलर का पेड़ है।

मैडम वडम सब है चर्च से प्रार्थना कर रहे हैं --

लड़के लोग ब्लू कलर येलो कलर का कपड़ा पेहना हुआ है ग्रीन कलर का लाल दुपट्टा है।

सीट वीट मिलता है मोबिल ओबिल सब कुछ मिलता है हेलमेट वेलमेट नट बोल्ट ओल्ट कसने का गाड़ी का एक आदमी--

आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बहोत सारे फूल सा रखे हुए हैं फूलों का दुकान सा बहोत सारा है।

व्हाइट डोर हैं ब्राउन कलर का ग्रिल्स हैं व्हाइट कलर का दिवाल सा है लाइट वाइट लगा हुआ हैं।

ये पिंक कलर के बिल्डिंग पर है ये बैंक ये देखिए लाइट वाइट है इस जगह थर्मा बहोत सारी चीज है इस जगह--

कुर्सी सब है इसमें देख सकते है इस में बहुत अच्छा गोडाउन है जो वाइट कलर का है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सीमेंट का फैक्ट्री गोडाउन है ये।

यहाँ दो-तीन फिश टैंक और है देखिए आप देख सकते हैं ब्लू कलर का येलो कलर का पिंक कलर का बहुत अच्छा कलर आ रहा है इस--

लड़कियां सब व्हाइट पहनी व्हाइट कपड़ा रेड रेड स्काफ पहनी हुई है लड़के लोग व्हाइट सिफ कपड़ा पहनी देख पौधे आसपास में है येलो कलर का बिल्डिंग में है।

बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं देखिए यहां पे ग्रिल के इस पार बाजा वाजा सब कुछ रखा हुआ इसमें से--

इसका रूम देखिए कितना अच्छा व्हाइट कलर से है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में साइड में टेबल है गुलदस्ता उलदस्ता सब रखा हुआ है इस जगह--

सामने बिल्डिंग है जो व्हाइट कलर का है उसके बगल में बिल्डिंग जो येलो कलर का है देखने में बहोत अच्छा नजारा लग रहा है देख सकते हैं आप आसपास में बहुत चीजें है जमीन भी ग्रीन कलर का है।

आप लोग देख सकते हैं की गाड़ी का सर्विसिंग हो रहा है यह बाइक है एक एक आदमी--